यह एक बस स्टॉप है जहाँ पर एक बस खड़ी हुई है जिसका कलर व्हाइट और पिंक है उसके सामने की ओर एक बंदा खड़ा हुआ है जो बस को देख रहा है ।

और नीचे की ओर इसमें सरिये टाइप के लगे हुए हैं और ऊपर की ओर सीमेंट दिखाई दे रहे है ।

बिल्डिंग की दो और नारियल के पेड़ लगे हुए हैं इन सब में ढेर सारे झाड़ --

यहाँ पर एक नदी बनी हुई है जिस के आस-पास में छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं और एक साइड में थोड़े बड़े-बड़े पेड़ टाइप के लगे हुए हैं दुरी पर एक घर बना हुआ है।

जो कि ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है इसी की एक साइड में एक डिज़ाइन टाइप का बना हुआ है जिसमे काफी सारे लाइन्स टाइप की बना रखी है ।

जो कि येलो कलर से पेंट है और रेड कलर से इसमें लिखा हुआ है बेस लर्निंग अकादमी उसी के पास में सेम वैसी बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है --

साइड में ऊपर कर के एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर भी टीवीयाँ लगी --

यह एक एंट्री गेट है जिसको पूरा बलून से डेकोरेट किया गया है और राइट साइड में परदे लगाए गए है जो की ब्राउन और गोल्डन कलर के है ।

यहा पर एक खेत है जहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने हैंडफ्री लगा के रखी है और ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और ऊपर से जैकेट पहन रखी है ।

यहाँ पर एक हॉल है जहाँ पर जिम के इंस्ट्रूमेंट रखे है और एक बंदा है जो साइकिल एक्सरसाइज कर रहा है ।

के पास में और भी मशीनरी रखे हुए हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है।

यहाँ पे एक घर बना हुआ है जिसके अंदर येलो और ग्रीन कलर किया गया है और उसके अंदर जाली लगी है जिस जाली के ऊपर जो पार्टिशियन हो वो ब्राउन कलर का है उसी के पास में एक और घर बना है जिसकी दिवार थोड़ी बाहर की ओर है।

टी-शर्ट पहन रखी है उसके हाथ में एक वाइट कलर की टी-शर्ट है और सामने केवल एक काउंटर बना हुआ है जिसके पीछे एक और बंदा खड़ा हुआ है।

ऊपर डिज़ाइन किया है साइड मे कुछ कॉलम टाइप के डिज़ाइन बनाया गया है इसके साइड मे एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है इसके पीछे की और भी पेड़ लगे हुए है।

और वो दिवार पर येलो कलर --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

ट्रांसपेरेंट गेट लगे है और एक बोर्ड लगा हुआ है।

काफी सारे साइड में पाइप लगे हुए है इसका मैन गेट आगे की ओर बना हुआ है।

उसका कलर महरून कलर है और एक बंदा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने महरून कलर की टी-शर्ट पहन रख --

सामने की ओर एक लड़की बैठी है रेड टी-शर्ट पहनी है वो भी ग्रीन कलर ही कर रही है।